यह एक स्टेडियम है यह स्टेडियम बहुत --

कुछ लोग काम करते हैं।

भी लगाई गए है मंदिल के पी --

यह एक क्लिनिक है यह क्लिनिक --

बारी ईलाज करवा रहे हैं यह डॉक्टर --

यहाँ एक बिल्डिंग बन रहा है।

इंजीनियर हाथ में पेपर लिए --